इस इमेज में यहां पर एक बंग दुकान दिखाई दे रही है रेस्टोरेंट है यहां पर कुर्सी लगी है सामने टेबल भी लगा है।

जहां पर एक ग्रीन कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।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

यहां पर एक वाइट रंग की कार खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है। जहां पर नीचे टाइल्स में डिजाइन बनी नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है।